यह एक बॉक्स सिस्टम टाइप का शादी का तो नहीं लेकिन होटल जैसा लग रहा है दो फैन हैं कुछ आदमी हैं और कुछ बाँटने वाले हैं जो कि --

बॉक्स सिस्टम टाइप का टेबल सब लगा हुआ है।

यह एक मुजफ्फरपुर का पिक्चर है।